दिखाई दे रहा है। इस इमेज़ में एक दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है। उस बोर्ड पर हिंदी के शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीजे नज़र --